बोहोत - बोहोत बड़ी मूर्ति है जो पता नहीं किसकी है देखने से पता चलता है की श्री राम चं जी की है और पीछे काला आसमान भी दिखाई दे रहा है और--